जहां पर दो कार खड़ी हुई है।

यहां एक बहुत सुंदर पैलेस है।

यह एक बहुत सुंद रोड है।

और लवेके खंबे भी है।

इसमें पोस्टर भी लगे हुए है।

ऊपर की साइड बहुत से पंखे भी लगे हुए हैं।

और पास में बहुत पत्थर भी पड़े हुए हैं।

जो कि सूरज के पास ये दिखाई दे रहा है।

जहां पर बहुत से आदमी नहा रहे है।

जहां पर बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।